बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

ये एक कृष्ण भगवान की मूर्ति का चित्र है।

इस में लाल नीले बैंगनी हरे रंग की साड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे निर्माण कार्य हेतू बांस और दंडे दिखाई दे रहे है लोहा दिखाई दे रहा है।

फलो के दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

दीवार पर लगा टेलीविज़न दिखाई दे रहा है लाल और पीले रंग के गुब्बारे दिखाई गए है।

इसमे इनके हाथ मे बासुरी दिखाई दे रही है सर पर मुकुट दिखाई दे रहा है।

आ आकाश दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखाई दे रहे है।

जहाँ लोहे की रॉडे दिखाई दे रहे है पीछे वृक्ष्य दिखाई दे रहे है।

यह एक के समान का चित्र दिखाई दे रहा है यह अंगरा हुसैन का दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ती दौड करते दिखायी दे रहे हैं।

यह एक सुपर बाजार का चित्र दिखाई दे रहा हे जहा घर--

लाइट के खंबे दिखाई दे रहे है।

यह एक गाड़ी का शो रूम दिखाई दे रहा है।